इस चित्र में एक अ भ सब्जी की दुकान दिखाई दे रही है।

यहाँ पर तीन बसेस है।

और यहाँ पर कुछ बिल्डिंग भी है।

इस चित्र में एक व्यक्ति पहाड़ पर खड़ा है।

और यहाँ पर एक टीचर है जिन्होंने नीले कलर की साड़ी पहनी हुई है।

इस चित्र में एक दुकान नज़र आ रही है।

यहाँ पर चार व्यक्ति है ।

इस चित्र में एक बड़ा खेलने का ग्राउंड दिखाई दे रहा है ।

टेंट के बाज़ू में एक छोटा टेंट है वहाँ पर लोग बैठे हुए है।

इस तस्वीर में एक वाइमसाला है जाकी एक लड़का वाइम कर रहा हैं।

इस तस्वीर में बहोत सारे पोपट नज़र आ रहे है जो किवाइट कलर में है।

इस तस्वीर में एक पेट्रोल पंप नज़र आ रहा है जो की एक एच पि पेट्रोल पंप का नज़रिया है |

इस तस्वीर में एक बड़ा-सा ब्लैक बोर्ड है उसपे खाने के चीज़ो की तस्वीरे निकाले गई निकाली हुई है।